इस इमेज में भारत के सभी महान व्यक्ति और भारत माता के अ चित्रों का वर्णन किया गया है। इस इमेज में हमारी स्वरमंडल की थोड़ी चर्चा की गई है।